लोग खड़े दिख रहे हैं और बहोत अच्छी सजावट भी की गई है और इसके पास मे एक वृक्छ भी खड़ा दिख रहा है और इसके ऊपर साइड में बादल छाये हुए हैं।

बैंक के ऊपर भी एक फ्लोर बना हुआ है बहोत बड़ी बिल्डिंग बनाई बनी दिख रही है और उस --

गाजल लक्की दिखाई पड़ रही है। टमाटर भी है बैगन है और धनिया है और केले भी दिख रहे हैं और बोरी मे कुछ समान --

यहाँ पर दिख रहा है की एक रेस्टोरेंट है उस रेस्टोरेंट का नाम कृष्णा रोल एण्ड हट एण्ड फूड --

इसमें खरीदते भी नजर आ रहे हैं और इसके पास काली-काली सी मिट्टी दिखाई पड़ रही है और उस साइड --

यहाँ पर दिख रहा है कि एक थ्री व्हीलर गाड़ी खड़ी हुई है उस गाड़ी के ऊपर एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है उसमें --

यहाँ पर दिख रहा है कि एक बस खड़ी हुई हैऔर उस बस के ऊपर कुछ लोग चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग चढ़े हुए हैं और --

यहाँ पर दिख रहा है की बहुत बड़ा मैंदान है जिसमे बहुत वृक्ष खड़े हुए दिखाई पड़ रहे है ओर दो वृक्ष पास मे ही खड़े है उनके पास --

कुछ लोग नीले कलर की ड्रेस पहने हैं और कुछ लोग रेड कलर की बनियान पहने हुए हैं। उनके पीछे वृक्ष भी खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और कुछ --

बहौत सारे लोग काम करते हुए नजर आ रहे हैं और वो गिट्टी भर-भर मशीन मे मशाला बनाने वाली मशीन मे डाल रहे हैं।

एक लोग इस पारक की घास कटिंग मशीन को चलाते हुए नजर आ रहे है ओर बड़े-बड़े भी विरक्ष खड़े हुए है इसके पास।